यह एक योगा स्थल है यहां पर लोग योगा करने के लिए आते हैं योगा शरीर के स्वस्थ रखने के लिए लाभदायक होता है।

का इंचार्ज है यहां पर लोग बहुत सारे इलाज कराने के आते हैं ये सादुलगंज में है बीकानेर में।

यह एक मेडिकल स्टोर है हरि मेडिकल स्टोर के नाम से यहां पर सभी प्रकार की दवाइयां मिलती हैं।

जो एक लड़के की पेंटिंग बनाई हुई है चेयर पे बैठा रखा है और एक दूसरी पेंटिंग बना रही है।

बहुत सारी फाइलें पड़ी हुई दिखाई दे रही है सेनीटाइजर बॉटल रखी हुई है।

ई मित्र वाला है यहां पर ई मित्र फोटो स्टेट ऑनलाइन फॉर्म सभी प्रकार के काम करते हैं पासपोर्ट साइज फोटो भी यहां पर मिलती है।

यह एक रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट के अंदर बहोत सारे लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं लाइटें भी लगी हुई है।

ये एक लाइब्रेरी है इसमें सभी बच्चे पढ़ रहे हैं यहां पर पढ़ने की व्यवस्था बहोत ही अच्छी है।

लोग आते हैं सेविंग कटिंग फेशियल सभी प्रकार के यहां पर किए जाते हैं सैलून बहोत ही --

यहाँ पर लोग खाने के लिए आते हैं एक लड़का दिखाई दे रहा है और एक टेबल पर बैग भी दिखाई दे --

ये यहां पर गाड़ियों की सभी प्रकार की सीटें मिलती हैं कवर मिलते हैं और यहां पर रिंग भी मिलती है।

यहां पर कुछ बोरियां भी रखी हुई है कट्टे भी रखे हुए हैं और कुछ थैले पॉलिथीन के भी रखे हुए हैं यह बहुत ही बड़ा गोदाम है।

दुकान है यहां पर कपड़े भी मिलते हैं गोईल के।

यह डॉक्टर बिसिकिया का क्लीनिक है यहां पर सभी प्रकार की त्वचा की जांच की जाती है।